ज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जैंट्स सैलून आपको दिखाई पड़ रहा है| जैसा की आप लोग देख पा रहे हैं ये सैलून है यहाँ पर आदमी सब आकर के जैंट्स सैलून है| यहाँ पर आदमी सब आकर के मेल लोग आकर के अपना दाढ़ी फेशियल और बाल वगैरह कटिंग कटवाते हैं और यहाँ पे जो बात की जाए फेसिलिटी की बहुत अच्छी फेसिलिटी यहाँ पे दी जा रही--

तेरा पैसा वगेराह सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने जंगल में वन चले गए थे यहाँ पर तपस्या वगेराह किये थे तो इसलिए बोले भगवान जो भगवान की प्राप्ति हुई थी देखिये अगर कोई व्यक्ति अगर--

तो जैसे आपलोग देख पा रहे है देखो गौतम बुद्ध का जो प्रतिमा दिखाई पड़ रहा है बहुत दिन पहले यहां पे स्थापित किया गया है देखिये गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा तब मिलता है जब उन्होंने जो अपना राजपाठ सब छोड़-छाड़ के जो आ गए थे यहाँ पे।